हम लोग देख रहे है कि यहां पर बहुत घर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा- बड़ा घर है और घर के बगल में पेड़ पौधे भी है और बहुत आदमी भी है। देखने में खराब जैसा दिखाई दे रहे है। देखने में अच्छा नही लगता है।

हमलोग यहा पर देखते है की यहा पर बहुत लेडीज के सामान मिलते है बहुत चीजे मिलते है यहा पर एक आदमी बैठा हुआ है सायद यह बेच रहे होंगे। जुककर बैठा हुआ है देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत सामान है।

. दो गो बांस है। बहुत लम्बा - लम्बा बांस है। बांस के पीछे में बहुत बड़ा पेड़ पौधे है। देखने में गाड़ी बहुत अच्छा जैसा दिखाई दे रहे है।

देखने में खाने के लिए मन करता है।

हम लोग यहां पर देखते है कि दूर से देखने में बहुत बड़ा - बड़ा घर दिखाई दे रहा है और यह पहाड़ है और पहाड़ में बहुत ढेर पेड़ पौधे हैं और बहुत चीजें हैं।